ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं और लाइटिंग क्या खुबसूरत लाइटिंग ऊपर में की गयी है और उसके ऊपर से सीलिंग मस्त लगी है और आगे में सिप - सिप करके कुछ लिखा हुआ है।

शर्ट पहन के जे ओ की फोटो वहाँ पे खिंचा रहा है।

के बगल में देखा जाये तो इंग्लिश में लिखा गया थाका कॉलेज और इसके बाई तरफ लिखा गया हैं इस्टैब्लिश इन --

जिसमें सर्विस के लिए काफ़ी सारे सामान रखे हुए हैं। निचे में हम देख सकते हैं कूलर भी रखा गया है और उसके बगल में देख सकते है पार्ट को उठाने के लिए काफ़ी सारे सामान रखे हुए हैं।